रोड पे खड़ी हुई एक साइकल और मोटर सायकल दिखाई--

कुछ लोग दिखाई दे रहे है ऊपर पूल बना है जिसपर दो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे है बहुत ही लम्बा पेड़ दिखाई दे रहा है जो की तालाब के किनारे है।

यहाँ पर एक बहुत ही सुन्दर गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में दो हाथी बने दिखाई दे रहे है एक हाथी बड़ा है एक हाथी छोटा है हाथी के नाक में सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

सड़क पे एक झंडा गड़ा दिखाई दे रहा है झंडे के आगे एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है आस-पास पेड़ दिखाई दे रहे है पानी का गढ़ा भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

लड़को ने पिले कलर के कपडे पहने है हाथो में केंडल जला दिखाई दे रहा है कुछ बच्चे और कुछ औरते खड़ी दिखाई दे रही है।

ये अपने हाथ में मोबाईल रखा हुआ है और मोबइल से अपने फोटो खींच रहा है उसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है टी शर्ट --

उसपर सफ़ेद कलर से लिखा है एस. बी. आई. ए. टी. एम. बाहर मोटर सायकल खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो की तीन है।

यहाँ पर एक बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के बाहर गाड़िया खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक गाड़ी सफ़ेद रंग की तथा एक गाड़ी लाल रंग की दिखाई दे रही है।

ऊपर एक और बोर्ड लगा है उस पर डेंटल पार्क लिखा हुआ है और पास में एक बोर्ड जिस पर भी कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

उस पर माजा लिखा हुआ है कांच दिखाई दे रहे है लड़के ने नीले कलर का ओढ़ा हुआ है पीछे भी कांच दिखाई दे रहा है।